बैंक ए.टी.एम. है। वहाँ पे बैंक ए.टी.एम. है।

यहाँ पे देखिए फूल ऊल सब लगा हुआ है और गोल्डन रंग का रंगा हुआ है। टाइल्स भी लगा हुआ है।

जो अपने अपने चटाई पे योगा कर रही --

एक आदमी खड़ा हुआ मोबाईल चला रहा है। उसके बगल में खंभा है। बिजली की तार यह सब हैं। एक स्टीकर है यहाँ पर सटा --

यह दृश्य देखिए बहोत सुंदर लग रहा है। आज का दृश्य बहोत सुंदर है।

हरे- हरे हरे-हरे घासें है। यहां हरी हरी गमलो में बहोत सारे फुले हैं। पेड़ो पौधे भी --